पीछे बडासा गार्डन बना हुआ है जिस गार्डन में एक गाड़ीया खड़ी हुई है एक आदमी सफ़ेद कपडा पहने हुए खड़े है।

सामने बडीसी कंपनी है कंपनी के एक जो बाहर बहुत सारे स्कूटिया और गाड़िया खड़ी हुई है।

और नि निचे एक सीढिया बनी है अंदर जाने के लिए और अगल बगल पेड अगल बगल हरे पौधे हैं।

स्टेज बनी हुई है जो स्टेज में एक परदे अगल बगल लाइटे लगी हुई है और फूल भी फूलो से सजा हुआ है।

मैदाने हैं और गाडियां खड़ी है आ रास्ते बने हुए है जी आ रहे है जा रहे है जंगले दिख रहे है जी जंगलों मे हरे भरे पेड पौधे भी है बादल सफे ऐ काले और निले है।